और यहाँ पर जमीन पर एक खाली नेट बिछी हुई है।

यहाँ पे एक बहोत सुंदर सा व्यू है। यहाँ पे --

एक शोरूम है और यहाँ पर महेन्द्रा की एक --

और बहुत सी प्रोडक्ट इसर् शॉप में है।

जिसमें अंडे रखे हुए हैं और एक --

अच्छे फूल रखे हुए हैं ।